ये गेट दिखाई दे रहा है गेट का कलर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है आमने -सामने दीवार दिखाई दे रही है ।

यह फोटो एक दुकान भी दिखाई दे रही है ये किराने की दुकान की दिखाई दे रही है ऊपर के तरफ लगी दिखाई दे रही है पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है ।

यह एक कारखाने की फोटो दिखाई जा रही है यहाँ पर कार रिपेरिंग होती हुई दिखाई जा रही है। सामने की तरफ एक कार दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की दिखाई दे रही है जिसमे दो लोग काम करते हुए नजर आ रहे है।